ये ऑरेंज मार्ट का बाहर का रास्ता है।

ये हैप्पी बड्डे रेस्टोरांट का--

इसके पीछे एक सोसायटी हे और वैक्सीन सेंटर भी है कोविड वैक्सीन के लिए ।

पी_एन_बी बैंक का ए_टी_एम भी है और यहाँ पे लोग अपने बाइक और कार मे डीजल डलवा रहे है ।

ये एक पेट्रोल पम्प है। जहाँ पे दो या तीन मशीन लगे हुए है पेट्रोल और डीजल डालने के लिए।

ये बट ब्रिज के नीचे--